ये है फोटो एक रेस्टोरेंट के अंदर की है जिसके अंदर का सब समान --

जिसमें किसी तरिके का कोई फॉग्सन जैसे शादी या जन्मदिन मनाया जा रहा है यह बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है।

यह फ़ोटो एक कंस्ट्रक्शन साइट की जान पड़ती है। जिसमे एक कमरे की छत पर --